बहुत सारे पेड़ पौधे हरे हरे देख रहे है यहाँ पर स्क्वायर आकार का कुछ पानी मे डला हुआ है जो पता नही क्या है यहाँ छोटी छोटी घास झाड़ीनूमा दिख रही है जो की हरे रंग की है यहाँ पे कुछ खाली जगा भी--

इक़बाल चिकन शॉप ये मतलब चिकन शॉप ही है जहाँ जिसको भी मुर्गा खरीदना हो वो यहाँ पे मिल सकता है और यहाँ पे स्कूटी पार्क --

पानी में परछाईं दिख रही है यहाँ पे कचड़ा भी डाला हुआ है छोटी-छोटी घाँस भी पेड़-पौधे भी बहोत दिखाई दे रहे है कुछ छो छोटे है पेड़ कुछ बड़े है हरे-हरे पेड़ है यहाँ पर पानी का रंग साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है क्यों की यहाँ पे रात्रि है तो बादल--

सी_ जी_ टी_ वि_ एस यानी ये के मतलब सेल लगी हुई है जो की टी_ वी_ एस की है यहां स्कूटी भी हैं बाइक्स भी हैं।

बड़े पेड़-पौधे भी है छोटी-छोटी फसल भी है हरयाली-हरयाली दिखाई दे रही है यहाँ पे घर भी दिखाई दे रहे है रस्ता अलग से दिखाई दे रहा --

कार्यालय है जिसका नाम कार्यालय नगर पंचायत पांडातराई यहाँ पे वाइट कलर में पूरा ये है और इसकी जो बॉर्डर है।